देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत काफी जगह है। बहुत सूंदर दिख रहा है।

एक आदमी भी बगल में खड़े है। बहोत --

ये स्कूल देखने में बहुत सूंदर है। देखने में बहुत बड़ा ही है।

इस मंदिर के आगे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे --